यहाँ एक फर्श लगा है सफेद कलर का फर्श है और छोटा सा पेड़ की लकड़ीए है।

और वहाँ पर दीवार है और वहाँ पर शिडिया है छोटी सी और निचे फर्श है फर्श उस कलर का है वो नहीं है।

पर इनाम का कुछ लिखा है और यहाँ पर कांच के गेट लगे है अंदर कपड़े है।

यहा पर एक सब्जी मंडी बाजार सा कुछ दिखाई दे रहा है एक दुकान है ऊपर लीली ब्लू कलर की नेट है।

यहाँ पर एक तगाड़ी हैं और एक थाली हैं और एक टुकन्या हैं उस थाली में कुछ रखा हैं और तगाड़ी में पानी हैं और सफ़ेद सफ़ेद सा कुछ हैं और यहाँ पर एक जानवर हैं दो जानवर हैं।

और यहाँ एक पोस्टर भी लगा है यहाँ पर फ्रूट है पपीता ऑरेंज चीकू वग़ैरा वग़ैरा काम--

ये मार्केट है यहाँ पर दो लड़के है और यहाँ पर रैलिंग है यहाँ पर कुछ सिढीया है।

और इस टरफ गू-पोस्टर लगा है गूगल इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब और बहुत सारे ऍप्स के नेम लिखे हुए है ऊपर एक बड़ा ऍप्स है।

बैठने की और यहा पर ब्रेंच हो बहुत सारी यहां पर एक बडा बोर्ड लगा है वो सफेद कलर का है उसपर मार्केल से लिखाता है।

घास है और यहा पर पेड़ पौधे लागे है उस तरफ और सीड़ीया बनी है ओसी लग रही है हमको और यहा पर पत्थर भी है एक पत्थर दिखाई दे रहा है और यहा पर मटी --

बहुत सारा पानी है और पत्थर भी है और कुछ पत्तियां भी है हरी-हरी घास भी है और वहाँ भी एक कुछ रखा है यहाँ एक पेड़ है।

इस तरफ छोटे छोटे यहाँ पर फ्रुट के खोखे रखे हुए है इ- इटे दिखाई दे रही है हमको और यहाँ ए- एक लाल कलर का कुछ--